ओर दो लेडिज खड़े हुए दिख रही है एक सर खड़े हुए दिख रही है और ये सबै लड़के कुछ बनाते हुए दिख रही है दो कैंची रखे हुए फ़ेवीकोल रखे हुए है और बहुत सारा सामान रखे हुए दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमे अ एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे आदमी स्टेज पर दिखाई दे रहे है।

व्हाइट कलर का रखा हुआ है कोई ग्रीन कलर रखा हुआ है कोई रेड कलर रखा हुआ है ये सभी एक रंगोली बना रही है और पीछे हमे थोड़ा पेड भी दिखाई दे रहे है।

और एक लड़का येल्लो कलर की अ शर्ट पहने हुए है दिख रहा है और सामने हमे गॅस लगे हुए दिख रहे है जो की काच के है।

यहा पर हमे एक मस्जिद दिखाई दे रहा है और मस्जिद मे है बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है सभी व्हाइट कलर की कुर्ते पहने हुए है ऊपर टोपी लगा हुए है।

यहा पर हमे बहुत सारी लड्कीया आ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और लड़के भी दिख रहे है ये सभी दोनों हात से ऊपर--